एक ठेला खड़ा हुआ है। एक बाइक है। एक साईकल खड़ी हुई है।

एक औ दुकान के अंदर बोहोत सारा समान ए ।

यहाँ पे कुछ बिल्डिंग दिख रही है सफेद कलर की। एक टॉवर लगा हुआ कुछ लोग खड़े हुए हैं।

एनिमल्स की फोटो बनी हुई है दोनों तरफ पेड़-पौधे लगे हुए हरे --

अ सीलिंग में एक बल्ब लगा हुआ है।

यहाँ पे एक रोड दिख रहा है रोड के दोनों साइड दीवार बनी हुई है।

यहाँ पे एक बर्थडे का डेकोरेशन दिख रहा है।

यहाँ पे एक रोड दिख रहा है रोड के दोनों साइड पेड़-पौधे लगे हुए है एक सफ़ेद कलर की कार खड़ी हुई है।

एक बिल्डिंग बनी हुई है जो सफेद कलर से पेंट है पिंक कलर से दिख रहा है दो --

और गोल्डन कलर के पर्दे लगे हुए हैं येलो और रेड बैलून लगे हुए हैं मेट --

पर्पल कलर का आसमान दिख रहा है।

जिसका चैनल गेट लगा हुआ है दो चैनल गेट लगे हुए दि --

फीमेल जनरल वार्ड --

जहाँ बहोत सारी लाइट लगी हुई है। कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं।

और बिस्किट के पैकेट रखे हुए दिख रहे हैं सफोला के ओट्स रखा हुआ दिख रहा है अंदर के तरफ दुकान में।

दीवार पर पेंटिंग लगी हुई --

यहाँ पे एक सफ़ेद कलर का मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर के तीन गुंबद है जो --